सुंदर होइगी मस्त-उस्त है बहुत पेड़ गाछ-उछ है बहुत गाछ-उछ है।

केतना मस्त मोबाइल से बात करब करे हेय मस्त --